कुछ चेयर भी पड़ी है और अलमीरा भी रखी हुई हैं।

यह एक मच्छी मार्केट है जहां पर --

मैं आकर पेट्रोल को डालते हैं और यहां पे दो पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह एक थर्मल प्लांट है जिसमें--

जिसमें एक बच्चा किताब खरीदने के लिए आया है।

चल रही है जिसके दौरान हर एक प्रकार के--

यह एक छोटी सी दुकान है जहां पर प्योर पेट का--

लगाए हुए है हर एक प्रकार के फूलों से भरे पौधे भी लगे--

इंडिया का झंडा लगा हुआ है और बच्चे को सावधान होने पे खड़ा किया--

यह एक खेत हैं जहां पर किसान अपनी फसल को बिजने के लिएं--

लगे हुए हैं और एक ऐ_सी भी लगा हुआ है और बैलून से डेकोरेट किया गया--

चेयर पड़ी हैं और एक पेंसिल स्टैंड है पेन स्टैंड है और लैपटॉप भी पड़ा है।

यह एक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जालंधर में है और यहां पर--

खड़ी हैं और गाय दूध देती हैं और सामने एक बिल्डिंग भी बनी हुई --

चीजों उगाया जाता है जहां की इन फसलों में बहोत ही बढ़ावा होता है।

यहां पर अलग अलग प्रकार की चीजें--

हर दर्द का इलाज देसी दवाई से ही किया जा--

यह एक सरकारी सीनियर सकैण्डरी स्मार्ट स्कूल है।

यहां पर हर तरह की दुकाने मिलती हैं और बहोत सारे भीड़ में लोग इकट्ठे होते हैं।